आस-पास मिट्टीही मिट्टी हैं।

यह एक तस्वीर है जिसमें एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के किनारे लोहे के नीले --

इंजन पर लिखा है डब्लू डी जी फोर डी ।